इस तस्वीर में एक दुकान का फोटो दिखाया गया है जिसमें सामान भरा हुआ है इसमें काफी सारे कट्टो में सामान है और ऊपर घी तेल वगैरा --

मेंन गेट को दिखाया गया है और उसमे पूरी बिल्डिंग को दिखाया गया है। जिसके ऊपर ऐ_सी वगैरा लगी हुई हैं और ये दो मंजिला बिल्डिंग है।

इस तस्वीर में एक दुकान को दर्शाया गया है जिसके ऊपर लिखा हुआ गोदारा स्टोर और पायल दूध खेरा रोहट और इसमें किराने का सामान भरा हुआ है काफी चिप्स वगैरा और छोटे-मोटे सामान रखे हुए हैं।

जिसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं और इसके नीचे एक स्टैंड लगाया हुआ है इस प्रकार से इसको सेट किया गया है जिसमें हमें ये मेजर करके नंबर शो करता है।

इस तस्वीर में एक जिम का दृश्य दिखाया गया है जिसमें बॉडी बनाने के लिए सामान रखा हुआ है जिसका रंग पीला है।